सैलून के बाहर लाल रंग से पूरा दीवार है।

और यहाँ पर बहोत सारे रंग-बिरंगे पेन दिखाई दे रहे हैं। पेंसिल रखी हुई है। रबर है। शॉपनेर है। बुक है। किताब है।

यहाँ एक गूफा है गुफा के पास में एक महिला खड़ी है अ बाहर कुछ लड़के भी बैठे हैं और खड़े हैं पत्थरों के बीच।

यहाँ एक नदी की किनारे --

यहाँ एक बहुत सा बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के चारों तरफ से बाउंड्री है।

ये स्कूल है और स्कूल में बहोत बड़ा ग्रिल वाला गेट है।

और बहोत सारे लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कुछ खड़े होकर अपनी जगह ढूंढ रहे हैं।

सामने बैंगनी रंग से स्टेज को सजाया गया है।

तो बहुत सारे पानी अत्यधिक धारा में जा रहा हैं। बांधा गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। बांध के साथ इर्द-गिर्द छोटे-छोटे पेड़ पौधे हैं।

या गया है। यह एक बड्ड़े पार्टी है। सामने लिख वा है "हैप्पी बड्ड़े "।

यह मॉल जैसा लग रहा है और मॉल ही है। सामने एलेकसिटी सीढ़ी है और बहुत सारे लगे हुए हैं पोस्टर ।

यहाँ बहोत सारे बड़े-बड़े चट्टान हैं। चट्टान पर --

स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल में बहोत सारा पानी डाला गया है एक व्यक्ति नहा भी रहे है एक बालक जा रहा है नि --

घोड़े पे एक बैठी महिला है महिला ने तलवार ले रखा है हाथ में।

उसके बगल में मीटर लगा है। मीटर के ऊपर नीले रंग के --

और ऊपर उजला रंग से कलर किया गया --

यहाँ बहोत सारे बच्चे और महिलाएं झूले पर झूल रही है कुर्सी वाले झूले पर।

कुछ हरे हैं तो कुछ सूखे हैं हल्के।

यहाँ सभी लड़के लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

हरा रंग के फूल पीले रंग का फूल गुलाबी रंग का उजले रंग के फूल से --

लास्ट गेट से अंदर की ओर आते वक्त एक व्यक्ति खड़े है।

चार बालक बैठे हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए।